और यहां कई तरह की चीजे भी रखी हुई हैं।

एक आदमी सीढ़ियो पर खड़ा है।

और दो खिड़कियां भी दिख रही है।

इस पर रेनू आर्ट का बोर्ड लगाया गया--

और कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं।

यहां पर घास भी लगी हुई है।

ये तस्वीर बहुत बड़ी दुकानों की है।

इसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं जो काले रंग की हैं।

ये तस्वीर एक बाजार की है इसमे बहुत बड़ा मॉल है।

और उसके हाथ में एक हरे रंग का --

यहां पर कई पेड़ पौधे और झाड़ियां भी हैं।

ये तस्वीर एक गऊशाला की है।

ये तस्वीर बहोत सारे लोगों की हैं।